खेल रहे हैं बहुत ही सुन्दर खेल रहे हैं यहाँ नाईट का दृश्य जैसा लग रहा हैं।

उम्म जाम की जाम रंग की तरह हैं।

स्कूल बहुत सुन्दर लग रहे है स्कूल के अंदर में एक कार है दो मैडम आपस में बाचीत कर रहे है बच्चे लोग बहुत ही सुन्दर ही बैठे हुए है।

होटल में एक कमरा हैं कमरा के कमरा में दो बॉटल हैं एक गर्म पानी वाला जार हैं।